इस चित्र मे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम विजय पुस्तक भंडार है।

एस चित्र मे सेंट्रिंग पर चढ़ा हुआ पिलर भरता हुआ एक पुरूष दिखाई दे रहा है।

सभी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं सभी योगा करती हुए दिखाई दे रही हैं जिनके नीचे नीले रंग की फोम बिछी हुई है।

इस चित्र में सड़क दिखाई दे रही है सड़क पे कई ठेले लगे हुए हैं बिल्डिंगस भी दिखाई दे रही हैं।

इसमें एक कपड़े की दुकान है आगे एक पुरुष खड़ा हुआ है जिसने चश्मे लगाया हुआ है।